और एक सोफा रखा है सोफे के सामने एक टेबल है उसके ऊपर बहुत सारी चीजे है और एक फ्लोवर पॉट भी रखा है जो येलो कलर का है।

यहाँ सामने एक छोटा पेड़ है और उसके बाद लकड़ी का पेड़ है जिसमे पत्तियां नहीं है पर एक काला कौआ उस पर बैठा हुआ है।